यहाँ पर एक ट्रेन खड़ी हुई है और उसके सामने एक बिल्डिंग है।

यह एक जिम है यहां पे अलग-अलग तरीके के एक्सरसाइज मशीन है कोई एक्सरसाइज कर रहा है कोई खड़ा है और बहुत सारी एक--

ट्रोली बैग रखा हुआ है एक आंटी बिग चेयर पर बैठी हुई हैं एक महिला खड़ी हुई है।

पौधे हैं देखने में अच्छा लग रहा है टेंट लगा हुआ है जोकि और अच्छा लग रहा है।

और यहां देखने में बहोत अच्छा लग रहा है।

और यहाँ सब लाइस है कलरिंग कलरफुल है।

एसी लगा हुआ है और साफ सफाई--

टेबल पे रखे हैं रिक्शे वाले अंकल पीछे में--